पौधे दिखाई दे रहे है हरे पौधे --

बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक टेंट दिखाई दे रहा है टेंट पर टेंट पर एक पीले रंग की पन्नी--

शिट पिंक कलर की दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आदमी ने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।

बिल्डिंग यहाँ पर लाल रंग की दिखाई दे रही है।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

एक टी_वी भी दिखाई दे रही हैं टी_वी का रंग काला दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक बड़ा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में काफी सारी मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है मिट्टी के आस-पास खम्भे दिखाई दे रहे जनरेटर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक टेंट दिखाई दे रहा है टेंट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर राष्ट्र--

और यहाँ पर एक पीछे एक अलमारी भी रखी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर--

लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो कुर्सियाँ रखी हुई दिखाई दे रहे--

यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग लम्बी - लम्बी दिखाई दे रही है।